बह साइड में एक सोना कलेक्शन के नाम से दुकान है और दूसरे साइड मिट्टी के बर्तन वगैरा रखे हुए हैं एक वाटर कूलर है पानी का।

ये फोटो में आप देख सकते है ये कोई कीरियाना शॉप है जिस मर आप देख सकते हैं काफी सामान वगैरह रखा गया है जैसे टाफी चॉकलेट बिस्किट--

इस फोटो में आप देख सकते है ये कोई चॉकलेटी केक वगैरा दिखाई दे रहा है।

आप ये देख सकते हैं एक आदमी जो खड़ा हुआ देख रहा है दो बाल्टीया रखी हैं।

एक्सरसाइज करने के लिए बंदे जाते हैं और बॉडी वगैरह बना के आते हैं।

ये पिज़्ज़ा शॉप वगैरह दिखाई दे रही है जहां पर आप देख सकते हैं बाहर पोस्टर वगैरह लगे हुए हैं पिज्जा बर्गर वगैरह के।

ये एक मशीन रखी हुई जिसमें हम अपने डॉक्यूमेंट डालते हैं और उसकी कॉपी होकर बाहर निकलती है आप देख सकते हैं साइड में चेयर्स वगैरह भी डली हुई है।

कापी किताबें वगैरा रखी हुई दिखाई दे रही है काफी पेन पेंसिल वगैरा लटके हुए दिखाई दे रही है।

जिसमें आप एक सोफा देख सकते हैं व्हाइट कलर का रखा हुआ है ऊपर देख सकते हैं।

आप यह देख सकते हैं बिल्कुल सीधे गली में एक वाटर कूलर है जिसमें पीने के लिए ठंडा पानी मिलता है।

रोड पर एक कुत्ता खड़ा है तो एक बाइक वाला जा रहा है जिसपे दो बाइक दो बैठे हुए हैंऔर बहोत सारे पेड़ पौधे--

देख रहे अभी तो गुल कच्चा कच्चा दिखाई दे रहा है जिसमें काफी पानी वगैरा दिखाई दे रहा है।